यह एक ऐरो शॉपिंग मॉल है जहाँ पर बाइ वन गेट वन फ्री है और यहाँ पे सूट और ब्लेजर बेचा जाता है।

यह एक तालाब है जहां पर बहुत सारे हरे-हरे पड़े-पौधे लगे हुए है यहाँ पर एक बाइक भी है यहाँ पर तालाब में मछलियां भी है।